बांध के बीच में एक छोटा सा दिवाल प्रतीत हो रहा है ।

डाकघर के दीवाल का रंग लाल है डाकघर के दीवाल में कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

घर के बाहर एक दो पहिये वाले वाहन भी खड़े हुआ हैं।

बच्चे अपने साथ सफेद कागज भी लाए हुए हैं।

यहां कुछ कुर्सियां भी लगाई हुई है।

इसके आगे पर्दे भी लगाए गए हैं।

इसके आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ।

ऊपर सुंदर खुला आसमान है।

यहां कुल तीन ट्रेन खड़ी हुई है।

चट्टानों में पानी भी जमा हुआ है।

ये दरवाजा सुनहरा रंग का प्रतीत हो रहा है।

यह एक बस स्टैंड का हाउस दिखाई प्रतीत हो रहा है।

यहां पे एक व्यक्ति खड़े होकर टिकट ले रहा है ।

इसके समीप ढेर सारे पुष्प के पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

इसके चारों ओर से घेरा हुआ है।

बैठे हुए व्यक्ति ने मैरून रंग की शर्ट काले रंग की जैकेट सफेद रंग की पैंट पहना हुआ हैं।

बैठे हुए व्यक्ति के समीप ही एक टेबल रखा हुआ है एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

कुछ व्यक्ति मंच के पिछले हिस्से में कुर्सी पर बैठे हैं।

यह एक मकान प्रतीत हो रहा है।

यह एक पुस्तकालय है यहां कई सारे पुस्तक रखे हुए हैं।